यहाँ पर यह विद्यार्थी और छात्राएँ बैठी हुई है जो की बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा ले रही है और अपने हाथों में पेन नोटबुक लेकर यहाँ पर है कुछ लिख --

इस शादी के कार्यक्रम मे वह बहुत ही अच्छी-अच्छी लाइटे लगाई गई है और यहाँ पर स्टेज को बहुत अच्छे तरीके से सजाया भी गया है और यहाँ पर बहुत सारी मेहमानों को बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई है।